कुछ आदमी बाइक पर बैठे हुए कोई चेयर पर बैठे हुए हैं।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

यहां एक लड़का अपना बॉडी बना रहा है जिम में।

यह एक होटल दिखाई दे रहा है जो बाहर का दृश्य है।

किया है साइट में स्विच बोर्ड है।

एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

साइड में एक पाइप ऊपर की तरफ जा रहा है।

आदमी कोई अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है।

नीले रंग के कपड़े से घेर रखा है।

एक आदमी अस्पताल के तरफ जा रहा है अंदर।

यहां पर नीले रंग में बोर्ड में लिखा हुआ है भाटीबड़ी ग्रामीण अस्पताल --

केक दिखाई दे रहे हैं यहां पर।

कॉफी का अअ कप भी दिखाई दे रहा है पीछे पंखा दिखाई दे रहा है।

ये एक हार्डवेयर का दुकान है जहाँ पर दरवाजा को लॉक करने के लिए लॉक डोर रखा हुआ है।

अच्छी कंपनी का भी लॉक डोर रखा हुआ है।

तेजी से ऊपर चढ़कर पंडित लोग पूजा करते हैं नदी का।

पीछे तरफ सफ़ेद वॉल है।

ये एक मेले का दुकान है।

लड़कियों का सजने सवरने का दुकान है।

एक डंडा भी है सामने।

कैमरा दिखाई दे रहा है।

एक आदमी पुराना किला जो है किला दिखाई दे रहा है राजा महाराजाओं के टाइम का किला होगा ये आगे बढ़ रहा है।

बीचो बीच में एक झंडा उतोलन डंडा भी दिखाई दे रहा है।

कुर्सियां रखा हुआ है टेबल भी है।

दो पंखा लगा हुआ है दो दरवाजा है दो पर्दे भी हैं।

दो बल्ब दिखाई दे रहा है।